और ये एक मार्केट है छोटा सा।

और बेस में बैठने के लिए बेंच वगैरा रखा हुआ है मिट्टी कलर का।

और यह पेड़-पौधा भी है और काफी बड़ा लग रहा है सब पहाड़ देखने में।

और नीचे में भी थोड़ा छोटा पहाड़ है।

रास्ता बनाया गया है सीढ़ी बनाया है।

और छोटा-सा कुछ ऊपर से घेर दिया गया है।

और यहां पे एक खेलने के लिए काफी सुंदर बनाया गया है देखने के लिए --

काफी अच्छा लग रहा है देखने में।

ये बच्चा है जो लेट गया है और एक व्यक्ति काम कर रहा है।

और इन्होंने मेहनत कर रहें हैं काम करके --

और मोर काफी सु खूबसूरत लग रहा है देखने में इसका पंख काफी बड़ा-बड़ा है।

और कुछ स्टार साइड में येलो कलर का बैलून लगाया गया है।

और साइड में कुछ सामान रखा हुआ है।

और यहां पे कुछ पीछे में ऊपर में अच्छे से डिजाइन करके कुछ लिखा गया है।

और साइड में स्कूटी वगैरा है साइकिल वगैरा खड़ा किया गया।

पर यहाँ पर कुछ बैठे हुए है और यहाँ पर एन्जॉय कर रहे है।

और पेड़ भी है काफी बड़ा-बड़ा।

यहां पे काफी सारे व्यक्ति सुन रहे हैं उनका बात।

जो कि यहां पे ये रास्ता दिया गया है घूमने के लिए।